यह पर हु देख रही हा एक जेन्स अपने माथे पे --

अभी लग रहा हैं भगवान का फोटो भी चिपका हु --

चीखने ये बनाने वही ब्यूटी पार्लर का दुकान है।

जिन्होंने शायद पिक घीचवा रहा हैं सभी आदमी मिल के --

हरा-हरा दुभी जमा हुआ हैं और लाल कलर का कुछ और --

है जो बहुत सारा रंग-बिरंग --